यह एक हॉस्पिटल की फोटो है जो ये हॉस्पिटल है उसका गेट खुला हुआ है हॉस्पिटल की छत के ऊपर पंखा लगा हुआ है सामने दो से तीन टेबल लोहे वाली स्ट्रेचेबल कुर्सी रखी हुईं है उसके जस्ट सामने एक रूम है जिसका भी गेट खुला हुआ है सामने यहां पर--

ऊपर कमरे में जाने से पहले एक पोस्टर लगा हुआ है नीचे फर्श एकदम साफ है ऊपर लोहे की कुर्सियां हैं।

यहाँ पर ब्लू कलर की चारों तरफ लाइट लगी हुई है खम्भों का कलर अलग-अलग दिख रहा है रात के अंधेरे की वजह से।

नीचे फर्श है जमीन है और सामने को--

राइट साइड से जा रहे हैं यहां पर सामने एक शॉप है जिसपे व्हाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ है और वाइट कलर की एक कार खड़ी हुई है।

जो छत्रपति शिवाजी का स्टैचू लग रहा है जैसे कि एक घोड़ा बना है घोड़े के ऊपर एक इंसान बैठा--

हरी हरी घास है दो तलवार नीचे जमीन के अंदर--

यह एक बिल्डिंग की फोटो है जो ये बिल्डिंग है ये चारों तरफ से घीरी हुई है जैसे कि सामने मकान दिख रहा है बिल्डिंग के जस्ट सबसे नीचे वाले फ्लोर पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने टोपी पहन रखी है एंड ऑरेंज कलर की शर्ट जिसकी टीशर्ट पर--

यह एक इंस्टिट्यूट ऑफ कोचिंग की फोटो है जहाँ पर काफी सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं सामने यहाँ पर दो स्कूटरियाँ रख रखी हैं।

जहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी लगी हुई छोटे छोटे पौधे भी लगे हैं।

जिनके ऊपर रेड कलर के फूल निकल रहे है जैसे डलते और येलो कलर के फूल निकल रहे हैं।

यह एक पेट्रोल पंप की फोटो है जो ये पेट्रोल पंप है यहां पर दो से तीन आदमी यूनिफॉर्म में ब खड़े हैं।

ये जो पेट्रोल टैंक है ये अभी भरे हुए हैं बिकॉज यहां पे कोई भी नहीं है सबका कलर व्हाइट है।

यहां टोटल पांच कुर्सियां रखी हुई हैं सामने काउंटर रखा हुआ है काउंटर पर कोई भी इंसान दिख नहीं रहा है।

यह एक लाइब्रेरी टाइप दुकान है जहां पर बुक स्टॉल है ये।

जिसने येलो कलर की नहीं बल्कि व्हाइट कलर की टी_सैंड एंड ब्लैक कलर की लोअर पहन रखी है।

जहां पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है जिसमें आगे ब्लैक कलर की जाली लगी--

दुकान में कोई दिख नहीं रहा है बेसिकली दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें नंदा टायर्स लिखा हैं।